अअअ और यहाँ ऑरेंज कलर का ग्रीन कलर ब्लू कलर के सामान रखे हुए हैं।

रेड कलर का बोर्ड लगा है।

इसका नाम एम डी एस पब्लिक स्कूल है।

ये लड़की है जोकि डांस स्टेप कर रही हुई है।